और बहुत साड़ी चीज़ यहाँ पर मंदिर के सामने ब-बिक रहे है। जैसे लोग प्रशाद मिठाइयाँ बहुत प्रकार की चीज़ रखी है और भक्तो की लाइन लगी हुए है इस मंदिर में।

यहाँ पे हम देख सकते है की यह पार्क का तशवीर है और यह पार्क बहुत बहुत ही ख़ूबसूरत है ।

यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे एक बर्तन के दूकान है और ये बर्तन के दूकान बहुत बड़ा दूकान है।

और अनेक प्रकार के बर्तन मिलते है स्टील का अल्मुनियम पीतल का और प्लेट भी मिलता है प्लास्टिक का प्लेट भी मिलता है बहुत प्रकार के यहाँ पे मिलते है ।

यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट मिलता है उसमें कार बल्ब होल्डर टाइल्स बैटरी पंखा यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ पे --

सन डायरेक्ट का डिश भी उपलब्ध है इस --

और सिविल इंजिनियर बहुत अच्छा इंजिनियर होता है। उनका कोर्स होता है। और बढ़िया सा काम करवाते है। सिविल इंजिनियर घरोका--

बहुत सारे बोटे चल रहे हैं आ बोट पे चढ़ के फैमिली इसे चला के एन्जॉय कर रहे हैं आ बोट पे एन्जॉय करने का मजा ही कुछ अलग होता हैं ये बहुत अच्छा एंजोयमेंट --